है आगे में लाइटस लगा हुआ है बहुत बड़ा है भूरे कलर का लग रहा है और आधा --

पीले है और उसमे ब्लू और का फूल बना हुआ है डिजाईन भी बनी हुई है यह पिंक कलर का है उसमे व्हाइट कलर का अथी बना हुआ है ।